कुछ बड़े पेड़-पौधे भी नज़र आ रहे हैं।

एक दुकान पे ऑरेंज रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसपर --

यूनिट वन भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

दीवाल पर एक ए.सी. भी नज़र आ रहा है।

एक बोर्ड पर आर.जे. फैशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

एक नीले रंग का बड़ा गेट नज़र आ रहा है।